और नीचे खानों में रखा है इधर गाड़ी के नट बोर्ड सभी चीज रखी हैं।

यह एक प्राचीन गुफा है जो की प्राकृतिक निर्मित है।